पीछे एक फ्रिज दिखाई पड़ रही है फ्रिज मे और भी केक रखे है सामने एक कार आती हुई दिखाई पड़ रही है जो की व्हाइट --

मोर दिखाये पड़रहा है जो कि ब्लाक कलर का दिखायी पड़रहा है उसका ब्लू कलर मे दिक रहा है नीचे कुछ पत्तर पडे हुई जु कि ग्रीन कलर दिखायी पड़रहा है पीचे दीवाल जईसे दिखायी पड़रहा है कुछ बंग दिख रहा है ब्राउन ग्रे कलर मे दिखाई पडा रहा है सामने पेंक टैटू पडे है।